ये हा एक ठो आर्य विद्या मंदिर हे ये ह आर्य समाज के मंदिर हे ये ह रामपुर के अउ ये ह लाल कलर के यह गेट लगे हे।

ममता किचन स्टील दूकान ये ये ह बर्तन दूकान ये ऊपर म ममता क्रोकरी लिखाये हावय बीच मे ममता किचन लिखाए हावय ।